रखे गए है बहोत सारे लोग दुकान में बैठे हुए है और--

यह एक बहोत बड़ा हॉल है इस हाल की दीवारों में पेंटिंग रखी गई है और इस हॉल --

यहां पर बहुत सारे लोग है जो कि यहां पर--

बहुत सारे पेड़ पौधे हैं औ --

और बहोत से लोग यहां पर खड़े हुए--

यह एक बहोत बड़ा एरिया है और यहां पर बहोत सारे--

शॉप हैं और बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे है और बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं यहां पर।

बहोत बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं और कुछ लोग रोड से भी चल रहे हैं।

बहुत से लोग यहां पर है और--

विल्डिंग है और इस एरिये में बहुत सारी गाड़ियां है और इस एरिये के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं।

यह एक बहुत बड़ा एरिया है इस एरिया के चारों तरफ बहुत--

यहां एक बहोत बड़ा मंदिर है।

सभी अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी --

चेयर लगी हुई है बहुत सारे लोग यहां पर कॉफी पी रहे है।

यहां पर खाना खाने बैठे हुए है और उनके लिए खाने का इंताज--

कुलवी टोपी की है यहां पर बहोत सारी टोपिया रखी गई है और यहां पर बहोत सारे लोग--

यह एक क्लास रूम है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं।

इसमें बहुत बड़ी मार्केट दिखाई गई है और बहुत सारे दुकानें दिखाई गई है।

और बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।